आतिशबाजी हो रही है लोग हैं देख रहे हैं।

टेन लगे हुए हैं पिलर पे खड़े हुए हैं शायद तक ये फैक्ट्री का है जिसमें दोपहर के टाइम लोग लंच या आराम कर रहे है।

चित्र में बहुत टैक्सीयां खड़ी हुई है सवारियां आ रही है एक तरफ एक अह छाता ले के बैठा हुआ है।

ए_बी_सी_डी का लगा हुआ है जिसपे बच्चे एक कुछ है पड़े कुछ अलग खड़े ए और सी खाली है।

शॉप का फोटो है जिसपे पाड़ी के फिटिंग के पाइप के अलग है की अलग है कुछ पाइप पड़े हुए हैं।

विंडो है ए_सी यां लगी हुई है पाइप लगे हुए है एक नोटिस बोर्ड चिपकाया हुआ है।

एक गाड़ी खड़ी है कांच के गेट है लगे हुए है बिल्डिंग है रेलिंग लगी हुई है ऊपर हरी-हरी घास है पेड-पौधे लगे हुए है दो आदमी --

बाहर गेट है ए_सी लगी हुई है।

तस्वीर एक घर के बगीचे की लग रही है जिसपे मूढ़ेर अ जिसमें बैठने के लिए मूढ़े रखे हुए हैं पलंग रखा हुआ है बीच में आग है।

और एक सैनिक बोर्ड है जिसपे आकर्षक लाइटिंग हो रही है जिसपे आई लव बीकानेर लिखा हुआ है एक बड़ा है।

तस्वीर है सामने एक तस्वीर है जो एस_बी_आई बैंक की है दो आदमी है।

वह झंडी है एक त्रिशूल है ऊपर गुमट बनी हुई है जिसपे एक ध्वजा टंग रही है और श्री कन्हैया जी की फोटो लगी हुई है।

जिसपे बोर्ड रखा हुआ है बोर्ड पे भी भी सेवा सदन लिखा हुआ है वीर सेवा रामचंद्र जी --

तस्वीर है तस्वीर में मुडे रगे हुए हैं विस--

एक तस्वीर है दो बिल्डिंग है एक वाइट कलर की--